और आस-पांच कुस पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में कुछ ट्रक दिखाई दे रहे है जिसमे लोडिंग किया हुआ है कुछ समान लोडिंग हैं।

एक नदी से बेहता हुआ पानी जा रहा है।

इस इमेज मे हमे एक समुन्द्र विशाल समुन्द्र दिखाई दे रहा है समुन्द्र मे कुछ जहाज भी दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में दो लड़के दिखाई दे रहे है और उनके पास एक गेट दिख रहा है जो ग्रीन कलर का लगा है।

माता जी जिनको हिन्दु लोग मानते हैं।

और आस-पास कुछ लाइट्स भी नजर आ रही है लाइट्स लगी हुई है।

इस इमेज मे दो बाइक दिख रही है जो रोड पर खड़ी है आस-पास मे कुछ लोग भी दिख रहे हैं।

इस इमेज मे एक थाली दिख रही है उसमे दो चमच रखी है कुछ खाने का आइटम्स रखा हुआ है प्याज सलाद वगैरा रखा हुआ है।

अपना सुविधा जनक काम करते है उसमे जाते है पानी से ।